वह एक दिखाई दे रहा है उसी के बाजू में एक भी है।

इत्यादि ये सब बने हुए हैं जो की काफी देखने में खूबसूरत लगता है।

यह एक कपड़ों की दुकान है।